पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की गुलाबी रंग की नजर आ रही है और सामने की ओर बड़ा सा रोड गया हुआ है रोड खाली पड़ा हुआ है और यहाँ आजू बाजू भी --

एक बड़ी-सी बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग के चारों ओर बाउंड्री है जो कि रे म छड़ की है और यहाँ पर य कुछ अ चिड़ियाँ गई हुई हैं पीछे की ओर बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही हे जो की पीले रंग की हे बिल्डिंग में कुछ खिड़कियाँ बनी हुई हैं दरवाजे भी लगे हुए हैं।

कुछ दूरी पर बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और यहाँ सामने की ओर सीढ़ियां गई हुई हैं जो की बड़ी-बड़ी हैं।

हॉल दिख रहा है ऐसा लग रहा है की रैसट्रौंट का नज़ारा है और यहाँ पर बोहोत सारी टेबल कुर्सी रखी हुई हैं और यहाँ पर टेबल पर कुछ सामान भी नज़र आ रहा है और दिवाल पर परदे लगे हुए हैं जो की अलग अलग रंगो के हैं।

यह एक कमरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति का हाथ दिख रहा है और जो की कप पकड़े हुए है कप में कुछ भरा हुआ है और पीछे की ओर बड़ी सी दिवाल है।